इस फोटो में मुझे कुछ चट्टान दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे कुछ मशीन दिखाई दे रही है।